अ वेस्टर्न इंडियन सीट भी रखी हों टॉयलेट सीट और कुछ बाल्टियां भी रखी हुई हैं।

और काफी सारे प्लाजो वगैरा पर्स वगेरा काफी सारे आइटम टंगे हुए है।